यहाँ पे एक बड़ा सा तम्बू वम्बु कुछ डाल के रखा हुआ है इसके दूसरे तरफ कुछ पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यह देखने मैं काफी अच्छा लग रहा हैं और यह एक दूसरे तरफ मैं भी कुछ --

बाहर की तरफ में एक रेड कलर का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है देखा जा सकता है यह देखने में काफी सुन्दर लग रहा है।

यहाँ पर एक स्लाइडर दिखाई दे रहा है जिसका रंग येलो कलर का है सामने के तरफ बहुत सारे पेड़-पौदे दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पर एक मॉल की इमेज कि अंदर की इमेज दिखाई दे रही हैं जहा पे बहोत सारे मेंस के कपड़े टंगे हुए देखे जा सकते हैं।

यहाँ पर एक बहौत सारे कंकड़-पथरों को भी ये देखा जा सकता है।

यह देखने में काफी अच्छी लग रही हैं नीचे की तरफ से --

ऊपर चढ़ने के लिए भी कुछ सीढियां बनी हुई हैं सीढ़ियों के सहारे लेने के लिए कुछ रेड कलर के मागदशक दिखाई दे रहें हैं सामने एक बड़ा सा दे गे --

जोकि शीशे का दिखाई दे रहा हैं और सामने शिशु वार्ड करके कुछ लिखा हुआ है यह रेड कलर से लिखा गया है।

यह स्थान देखने मैं बहौत अच्छा और बहौत ही सुंदर लग रहा है।